एक बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक मकान बना हुआ है उसके आस पास बहुत सारे बॉउन्डरिया भी दिखाई दे रही है उसके अंदर एक खंबा भी दिखाई दे रहा है उसमे तार भी लगी हुई है।